चावल दिखा ता सैलेड दिखा था चारगो चम्मच बा टीसु पेपर बा।

इ एगो खेल के मैदान बाटे इहा बहुत सारा पेड़-पौधा बा।

इहाँ टेबल कुर्सी बाटे बहोत सारा लोग भी खड़े बाटे ई रात का समय लागत बाटे नीचे टेल्स बाटे टेबल पे प्लेट राखल बाटे नमक रखल बाटे ।